कुछ बाल्टी वाले डब्बे भी रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बैंक दिखाया गया है।

इस चित्र में एक पंडाल दिखाया गया है जो की दुर्गा पूजा का है।

उनके हाथ में एक त्रिशूल दिया हुआ है।

बहुत से डेंटिस्ट की मशीनें दिखाई दे रही है एक वॉश बेसिन दिखाई दे रही है।

उस शॉप के बाहर बहोत सारी रखी हुई पाइप नजर आ रही है।

बड़े से बैनर पे गढ़वा लिखी हुई है और उसकी छत अलबेस्टर की है।

इस दृश्य में एक क्लीनिक दिखाई दे रही है जोकि डॉक्टर की है।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

बहोत से पे पौधे नजर आ रहे हैं।

उसके बाहर एक बाइक पार्क की हुई है।

बहुत सारे चेयर दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक शॉप दिखाई दे रही है।

ए_सी लगी हुई है स्टेबलाइजर भी लगी हुई है।

इस दृश्य में एक स्लिप दिखाई दे रही है जिस स्लिप के ऊपर बहोत सारे ग्लव्स रखे हुए हैं।

जिनका कलर ब्लू व्हाइट ऑरेंज ग्रे रेड ब्लैक बहोत से कलर है।

इस चित्र में एक शॉप दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक सैलून दिखाई दे रही है।

कुछ यूज की चीजे रखी हुई है।

इस मॉल के वॉल पे बड़ी सी वी_टु की बैनर लगी हुई है।

और ग्रे कलर कि जैकेट भी पहनी हुई है।